बहोत ज्यादा प्यारा लग रहा है अच्छा खासा।

यह लग रहा है कई साथी --

बहुत सुंदर लग रहा है देखने मे कह रहा है --

यहाँ पर पूरा उम घर है जोकि अच्छा लग रहा है आर पार सब कुछ सही हैपोधे हैं पेड़ है।

खूबसुरत है बड़ा प्यारा लग रहा है अच्छा ख़ासा लग रहा है।

पेंटिंग हुआ है ये सब पेंट कर के छोड़ दिए हैं बहुत अच्छा लग रहा है देखने में खूबसुरत है सब कुछ ठीक-ठाक --

और ये गैस है पेट्रोल गैस सीजन में काम करता है बहोत अच्छा लगता है ।

और एक अ गाड़ी भी है अच्छा लग रहा है देखने में खूबसुरत है सब कुछ ठीक ठाक --

इसलिए सब दुकान उकान सब बंद कर दिया है और सच जानने के लिए चला गया है बहुत अच्छा लग रहा है।